बिल्डिंग के उपर रेलिंग लगी हुई है रेलिंग पर एन ए एन डी इ डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और आसमान भी दिख रहा है।

तस्वीर में एक टीन सेट बना हुआ दिखाई दे रहा है और पंखे भी लगे हुए दिख रहे है।

बहुत सारे मशीने रखी हुई है जो एक्सर्साइज़ करने की मशीने है एक आदमी एक मशीन पर एक्सर्साइज़ कर भी रहा है एक कुर्सी भी दिखाई दे रही--

इस तस्वीर मे एक बहुत ही पुरानी दीवार दिख रही है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है आसमान भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में पहाड़ी दिखाई दे रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे है हरी घास भी दिख रही है पानी भी दिखाई दे रहा है आसमान भी दिख रहा है आसमान में बादल दिख--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

पर एक झंडा लगा हुआ है एक बिजली खंबा भी दिख रहा है बिजली के तारे भी दिख रहे है आसमान भी दिखाई दे रहा है और सब्जीयों मे बहुत सारी सब्ज़ीया दिखाई दे रही है।

छत पर एल.ई.डी. लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है जो ऑन है और टोक-टोकनिया भी रखी दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

एक्टिवा भी खड़ी हुई दिख रही है पेड़ दिखाई दे रहे है।